जो की मछली दिखने में बहुत ही अच्छी लग रहे है और ये मछली पानी में रहते है जो की बहुत ही अच्छा देखने में लगता ह।

यहा पर एक लोग जिम मारने के लिए यहाँ पर आए हुए है और यहाँ पर रनर मशिन भी हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।

ओर ये बहुत हि अच्छे अंगूर है जो के काले रंग का है। ये फल बहुत हि अच्छे हैं और ये कैरेट में रखे हुए है। वन कैरेट एक कैरेट ।